इसमें बहुत सारी बुक रैक में लगी हुई है और कुछ बुक सामने की तरफ हैंग की हुई है इसमें गुलाबी कलर का काउंटर बना हुआ है और इसकी शटर खुली हुई है।

ऐसे में बहोत प्यारे बलूंस से डेकोरेशन किया गया है यहाँ पर बहोत प्यारी कैबिनेट भी बनी हुई है।

इस बैंक का नाम भी यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ और इसके साइड में एक दूकान है जो की बंद है इस मकान के में बहुत बड़ा गेट हुआ है और साइड में दो खिड़कियां भी है।

के यहाँ पर एक बहोत बड़ा गेट भी लगा हुआ है इस तालाब के इधर एक ऑटो खड़ा है और तालाब के उस तरफ बहुत ज्यादा पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा मकान बना हुआ है जिसमें सीढ़ी लगी हुई है इस मकान मैं सफेद कलर किया गया है इसमें बहुत बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ भी लगी हुई हैं ।

और इन गोर्डन के चारो तरफ बहोत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है यहाँ पर हरियाली बहोत ज्यादा है।

दो आदमी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं एक आदमी कुछ बजा रहा है और एक माइक में कुछ बोल रहा है यहाँ ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

जैसा कि आप देख सकते है यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट दिखाई दे रहे है इन फ्लैटों मे काम चालू है।

जैसा की आप देख सकते हैं यहाँ एक तालाब पर बहुत पुराना ब्रिज बना हुआ है इस ब्रिज पर से बहुत से लोग आते-जाते दिखाई दे रहे हैं।